एक को शायद से पसंद नहीं आया तो वह वापस जा रही है।

और उस गाड़ी का नंबर है बी_आर बाइस जे सेवन ऐट फाइव फोर ये बिहार स्टेट की है गाड़ी उसके बगल में एक बुल्लक कार्ड भी है जो टूटा फूटा है।

यह एक क्रोकरी शॉप है जहां पे डिफरेंट टाइप्स के कपस हैं।

यह ए_टी_एम का सीन है जो एच_डी_एफ_सी बैंक के द्वारा बनाया गया है इसके बाहर तीन लोग खड़े हैं अंदर एक आदमी पैसा निकाल रहा है।

एक टेबल के ऊपर ग्लास रखा गया है कुछ कुड़सिया है एक फैन है।

इस स्कूल की बिल्डिंग सभी कंस्ट्रक्शन में चल रही हैं।

जहां पे कुछ गाड़ियां खड़ी है काम होने के लिए यहां पे तीन मोटरसाइकिल एक स्कूटी है।

जहां एक हॉस्पिटल का सीन है एक आदमी जो जा रहा है उसके हाथ में प्लास्टर लगा हुआ हैं।

यह एक बैंक है इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया है इसके बाहर में ए_टी_एम भी है स्टेट बैंक ए_टी_एम लिखा हुआ है।

यह एक होटल का सीन है इस होटल का नाम होटल सोनिया सपना एक आदमी गेट पे खड़ा है।

यह एक जिम का सीन है जिसमें एक लड़का है वो अपना बनियाईन ऊपर करके अपनी बॉडी दिखा रहा है।

उल्टे साइड देख रहा है यहां पे अलग-अलग टाइप की मछलियां बास्केट्स में रखी हैं कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी मछलियां हैं।